और यहाँ पे खुदाई हो रही है। यहाँ पे बहोत सारे सामान रखे --

यहाँ पे वाईट ब्लैक कलर के जीने लग हैं यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे बहुत सारे घर भी हैं यहाँ पे पेड़ भी हैं।

ये एक जिम है। यहाँ पे सब एक्सरसाइज़ कर र --